अगल-बगल में रोड भी है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

अम्म जेना लग रहा है जेना कोई चीखे जा अथी हो रहा --

दिखने में बोहोत अच्छा लगता है ऊपर करकट चढ़ा हुआ है। एक-दो बाइक लगा हुआ हैं। एक-दो भईया दीदी लोग थड़े हैं।